तस्वीर है आदमी है औरत है पेड़ है फूल से सजा हुआ है एक आदमी है चस्मा लगाया है मूर्ति है।

बहुत बड़ा रोड है गाड़ियां खड़ी है एक गुलाबी इमारत है एक सफेद इमारत है आसपास पेड़ है।

पेड़ हे नदी हे कचरा हे।

इमारते है भरी-भरी घास है पेड़ पौधे है।

आसमान हे झोपडी हे आदमी हे झोला हे ।